अ कुछ पर्पल और सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे हैं। एक लेडीज खड़ी हुई है। लेडीज ने स्वेटर पेहना हुआ है।

अह पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं |

अ दूसरा लड़का नीचे खड़ा उसे देख रहा है। अ लड़के ने बैग टाँगा हुआ है।

उन्होंने टी-शर्ट पहिनी हुई है।

अह टेबल पर माँ सरसवती की फ़ोटो रखी हुई है।

अह बोर्ड पर बाल दाढ़ी इस्पा एंड सलून लिखा हुआ है।

बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई है।

अ बच्चें स्विमिंग पूल में नहा रहे है।

एक कार खड़ी हुई है। अ बाइक खड़ी हुई दिख रही है।

अ एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर कैनेरा बैंक लिखा हैं।

बोर्ड पर वी के लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

इमेज में एक बास्केट में बहोत सारे टमाटर रखे हुए दिख रहे हैं।